पे बहुत सारे लोग बैठे हुए है। रंगीत रंगीत झंडे लगाए गए है।

महिलाए है पुरुष है पुरुष और महिलाए बैठी हुई है पूजा कर रही है।